गार्डन के चारों तरफ छोटे-छोटे पैड हैं जिसमें हरे भरे पत्ते खिले हुए हैं।

दूर एक झील भी नजर आ रहा है जो कि सफेद रंग का है ये एक शाम का समय प्रतीत होता है।

एक व्यक्ति ने पिंक कलर का शर्ट और ब्लू कलर का पैंट पहना है दूसरे व्यक्ति ने स्काई कलर का शर्ट --

साथ ही छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं जिनके पत्ते ग्रीन कलर के और ऑरेंज कलर के हैं।

दिवार के सामने एक टेबल रखा हुआ है जिसमे अलग अलग सामान रखे हुए है जिसमे वाइट कलर के छह टिश्यू पेपर नज़र आ रहे है छह गिलास नज़र आ रहे है और एक प्ले--

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये एक स्कूल का दृश्य है स्कूल में बहोत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं सभी बच्चों ने सफेद और पिंक कलर का ड्रेस पहन रखा है सभी बच्चों के सिर पे लाल रंग की टोपी है।

यहां बहुत सारे बैठने की जगह बने हुए है जो बड़े कलर की हैं जिसके ऊपर ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ है सामने।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि यह एक बाइक है जो की ब्लैक कलर का है बाइक पूरी तरह से खुला हुआ है ।

दीवार के साइड में बाल्टी पड़ा हुआ है जो सफेद कलर का है बहुत सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं जो ब्लैक कलर के हैं।

जैसे कि मैं देख पा रहा कि यह एक एंट्रेंस है जिसमें कांच का दरवाजा है दरवाजे के ऊपर सिल्वर कलर के रोड लगे हुए हैं।

दो ट्यूबलाइट नजर आ रहे हैं जो वाइट कलर के हैं सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में बिजी है।

दुकान के बाहर कुछ वाटर बोतल्स नजर आ रहे हैं जिसके नीचे एक वाइट कलर का कंटेनर है।

इस सर के पीछे का जो स्पोंज है वो चॉकलेट कलर का है पीछे का जो दीवार है वो क्रीम कलर का है।

रोड के अपोजिट में एक कार खड़ा है जो की ग्रे कलर का है कार के पीछे पेड़ नजर आ रहा है जिसकी टहनी काले ढंग की है और पत्ते हरे रंग के नजर आ रहे है पेड़ के--

बिल्डिंग की साइड में ब्लैक कलर का बाइक खड़ा है जो आसमान है वो नीले रंग का नजर आ रहा है प्रतीत होता है यह एक दिन का समय है।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यह बहोत बड़े-बड़े स्पीकर्स है जोकि काले रंग के है स्पीकर्स के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ जिसमें लिखा हुआ है शर्मा ऑडियो ।

साइड में एक दीवार नजर आ रहा है जो कि क्रीम कलर का है जो ग्रिल है वो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है।

दूर बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं जिस की हरी भरी पत्ती नजर आ रही है रोड में बहुत सारे कार्ड भी नजर आ रहे हैं।

दूर एक आदमी नजर आ रहा हैं। जिसने व्हाइट कलर का शर्ट पहन कर रखा हैं।